यहाँ ऊपर का बादल भी आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त और कितना मस्त मौसम है देख सकते हैं आप लोग इस बादल को और फूल वाले को देख सकते हैं कितना मस्त और ये फूल बेच रहा है अपने म मस्ती में --

बैंक के सामने में बहुत सारा भीड़ है और दो-तीन आदमी बैठा भी है बगल में |

यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कुछ स्टूडेंट पढ़ रहा है यहाँ।

यहाँ पर देख सकते हैं केफे है जो की बहोत ही अच्छा केफे लग रहा है।

यहाँ पर एक चर्च का बोर्ड लगा हुआ है| वहाँ ऊपर मैटरनिटी एजी चर्च और उसके सामने में मोटर साइकल रखी हुई है काफी अच्छा मैदान भी है।

पुला बना हुआ है और पुला के नीचे बहुत ही पानी है और उसके पीछे टावर सब भी है हरा मैदान सब भी है।

यहाँ पे कितना अच्छा जंगल है सामने का खाली मैदान है पूरा इधर पहाड़ सब देखने को मिल रहा है।

सामने से सूरज की रोशनी कितनी अच्छी आ रही है सूरज की रोशनी भी देखने में अच्छी लग रही है और कुछ हरे-भरे घास सब भी है और सामने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एकदम खाली मैदान है।